इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है हॉल की दीवारें सफेद रंग की हैं।

चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क के ऊपर एक पीले रंग की पन्नी बिछी है।

और दीवारों के बाहर एक आदमी बैठा है।

इस चित्र में हमे एक बहोत बड़ा स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

स्विमिंग पूल के साइड में लाल रंग की जमीन है।

और मैदान मे बहोत सारे लोग खडे है सामने दो सफेद रंग की बिल्डिंग --

इस चित्र में हमें एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है कपड़े की दुकान में सफेद रंग की दीवार है।

पीले रंग की टेबल है कुछ लोग खड़े हुए हैं।

पेट्रोल पंप के ऊपर छत दिखाई दे रही है एक सफेद रंग की पेट्रोल की मशीन दिखाई दे रही है।

और हरे रंग की नेत बिछी है उसके ऊपर कुछ लोग बैठे हैं।

चित्र में हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड में एक रास्ता है।

और उसमें नीले रंग के कांच लगे हैं सामने एक तिरंगा है।

इस क्षेत्र में हमें एक बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है।

कुछ लाल और पीली सफेद डलियाएं टंगी हैं बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं।

बाल लिखा हुआ है ऊपर मोलाना आजाद लिखा हुआ है।

साइड में दो बिजली के खंभे हैं आसपास कुछ पेड़ हैं।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साइड में बहुत सारी हरे रंग की घास--

इस क्षेत्र में हमें एक सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है घर के सामने एक ग्राउंड --

इस चित्र में हमे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर एक ब्रिज है ब्रिज के नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी है।

एक ऑटो है ऑटो में कुछ लोग बैठे है।

ऑटो के बाहर कुछ लोग खड़े है एक औरत लाल रंग की साड़ी पेहनी--

सफेद रंग की कार है आसपास कुछ पेड़ हैं।

गुब्बारे हैं गुब्बारे सफेद ऑरेंज और हरे रंग के हैं।